इस दृश्य मे हमे एक इमेज बताई गई है जो एक बिल्डिंग की है वो बिल्डिंग पीले कलर की है तथा उसके प्रवेश द्वार खुला हुआ है।

तथा उसमे से बहुत सारा पानी निकल रहा है तथा उसको लोग साइड से बहते हुए देख रहे हैं ।

तो मॉल के अंदर बहोत से लोगों दिखाई दे रहे हैं तथा वहां पर बहोत सारी काले कलर की कुडसियां लगी हुई है वहाँ पर बहो बेनर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी पिले कलर की टीशर्ट --

यह दृश्य मे हमें बच्चों के खेलने की दुकान बताई गई है जिसके अंदर बहोत से --

यह दृश्य में एक मॉल का दिख रहा है जिसके अन्दर बहोत से लोवर टंगे हुए हैं तथा मॉल के छत के ऊपर बहोत सी लाइटे लगी हुई हैं तथा लोवर का कलर काला कलर का है और लाल कलर का हैनीले कलर का --

और आदि कलर का हैं तथा उसके आगे बोहोत सारी टी-शर्टे टंगी हैं।

तथा वहां पे बहुत से फूल पौधे लगे हुए हैं तथा बंगलों के आगे एक बड़ा सा बगीचा है जिसके अंदर बहुत से गुलाब के फूल दिख रहे हैं।

यह ईमेज में हमे एक प्रवेश द्वार दिख रहा है जिसके अगल-बगल मे बहोत से गुब्बारे लगे हुए है।

यह दृश्य हमें एक बड़ी सी दुकान का बताया गया है जिसके ऊपर बहोत से बैनर लगे हुए हैं तथा वहां पर लिखा है सैमसंग रियलमी तथा आदि उसके अंदर बहोत से इलेक्ट्रानिक चीजे रखी हुई --

इस इमेज में हमें पेट्रोल पम्प बताया गया है जो रात में चल रहा है तथा उसके अंदर लाइट लाइट जल रही है उसके बाहर एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है पेट्रोल --

यह दृश्य हमे एक बिल्डिंग का बताया गया हैं जिसके ऊपर दो मजदूर काम कर रहे हैं तथा वो बिल्डिंग की सफाई कर रहे हे ताकि उसकी छत साफ रहे।

यह इमेज में हमें एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा हैं जो तीन मंजिले का है तथा उसके सामने --